और इसके पीछे से जो है वॉटरफॉल है छोटा सा पहाड़ों से निकलता हुआ चट्टानों से पानी आता हुआ बहुत ही अच्छा वॉटरफॉल है।

ग्राउंड फ्लोर पे भी लगी हुई है गाड़ियां पार्किंग में और ऊपर भी लगी हुई है गाड़ियां--

आलू चाट दिख री है आलू चाट किसी--

बॉक्स में है जो है शीशे की बॉक्स में और चाट जो है अभी एक आदमी चाट खा रहा खाने के लिए कटोरी में निकाली है।

तीन अह अह लड़के जो है बैठे हुए हैं बाल काटने के लिए अभी और कुछ वेटिंग में है अभी।

झूला दिख रहा है यह स्पेन झूला है एक जिससे लोग--

यहां पर ए चलती फिरती एक दुकान है जहां पर हमें आइसक्रीम ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिलती है और बादाम शेक मिलता है और--

एक छोटी सी कटोरी है एक पानी का गिलास है और एक का टिशू पेपर के ऊपर एक स्पून रखी गई है।

और इसके बाहर कुछ बाइकर्स अपने बाइक लेके खड़े हुए हैं।

झील के किनारो किनारो से जो है रास्ता भी है परे किनारो से और कुछ लोग मुझे झील के किनारे दिख रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक बच्चा दिख रहा है जो कि फोटो ले रहा है और यह--

ब पानी के जो फब्बारा इसके पीछे से है एक अ बहोत ही अच्छे से इसके डेकोरेट किया गया है इस पानी के फबारे फब्बारा जहां से निकलता है।

और बहोत सारे लोग हैं जो है टहेल रहे हैं वॉल रोड में--